चार पिलर है जिसका कॉलर नीचे में ब्लू है एण्ड बीच में व्हाइट स्ट्रिप है फिर ब्लू है फिर रेड है फिर ब्लू है फिर ऊपर पूरा वाइट है।

एक फैक्ट्री देखने को मिल रहा है दूध का फैक्ट्री जिस पे दो लोग काम कर रहा है।

बहोत सारे फैंस भी दिख रहे है उसके बाद एक शॉप ओनर है जो अपनी कुर्सी पे बैठे है कुर्सी पे प्लास्टिक से ढका हुआ भी है एंड पीछे उसके बैग भी है।

टेबल टाइल्स का है एंड टाइल्स बहोत साफ है शाइनी है जिस पे रिफ्लेक्शन दिख रहा है ओ अंदर का सामान का एंड उसके कलर का उसके बाल का कलर काला है एंड --

बिल्डिंग का छत रेड कलर है फिर बिल्डिंग का कलर येलो कलर है और उसपे रेड रेड का --

एक बिल्डिंग का व्यू है राइट साइड पर कुछ गच्चीयां देखने को मिल रहा है और लेफ्ट साइड पे उस बिल्डिंग का आधा पोर्शन --

असमे टाइल्स भी है बीच बीच पे एंड एक फाउंटेन है फाउंटेन पे शायद से पानी अच्छा से नहीं आ रहा है।